हरे रंग की हरे और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है।

ऊपर दीवाल पे हम पंखा --

यह तस्वीर एक स्टेशनरी शॉप की है जहां पे हम काफी सारे शेल्फ को में काफी सारे अलग-अलग प्रकार की कॉपी किताबे --